ठीक इसके पीछे काफी घर बने हुए है जो कुछ सफेद कलर के और पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे है और ऊपर आसमान भी दिखाई दे रहा है।

जहां पर काफी बड़ी पेड़ लगे हुए हैं उसके नीचे कुछ बंदर दिखाई दे रहे हैं बैठे हुए।

चौतरा भी बना हुआ है जो हल्के सफेद और लाल कलर में है नीचे बाउंड्री है।

इस तस्वीर में हमें राय इलेवन स्टार मॉडल शॉप दिख रहा है।

एक व्यक्ति टी शर्ट पहने बैठा है उसके नीचे पैसे रखे हुए हैं और सामने मछली बेची जा रही है।

कीड़े नजर आ रहे हैं।

इसमें एक पुरुष चलता हुआ दिख रहा है जोकि नीले कलर का कपड़ा पहना है।

और अलमारी बना हुआ है उस पर कुछ बॉक्से भी रखी हुई दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में हमें विनायक कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सी_सी_टी_वी नामक शॉप दिखाई दे रहा है।

सामने सीढ़ी भी लगी हुई है और एक घर भी बना है और काफी पेड़ पौधे भी नजर आ रहे --

मछलियां काफी बड़ी बड़ी हैं जो और काले और लाल कलर में दिखाई दे रही हैं।

इस तस्वीर में हमें हिमालया गिद्ध नामक एक बाउंड्री दिखाई दे रहा है।

शटर दिखाई दे रहा है तस्वीर में और नीचे दुकान में लाइटे भी दिख रही है।